और बहोत सारे यहां पे चीजे दिख रही है जहां पे रबर वगेरा भी है।

और आगे फूल के पेड़ है गमले है ऊपर पे घर पे फूलो के प्रिंट है।

और सोफो सोफे वाले कुशनस भी हैं बहोत सारे शेप्स के सोफे --

बहोत सारे लोग नावो पे नाव की सवारी कर रहे हैं बहोत सारे मंदील हैं।

यहां यहा की आधी भूमि हरी-भरी है और आधी मम सुखी हुई है।

जो की देखने में सफेद रंग का है और इस पे काले धब्बे पड़ गए हैं।

और ये कोचिंग सेंटर छोटा है और इसके पीछे बहुत सारी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगस है और साइड में --

इइ ये भी कॉलेज बहुत ही बड़ा है और इ इ इसपे जाने के लिए सीढ़ियां हैं।

नीचे नदी है जो की नदी का पानी बहोत गंदा है।

और ये रोड के यू टर्न में है और अगल-बगल दुकाने है किनारो पे और गाड़िया चल रही है और पेड़-पौधे है।